बहोत सारे बच्चे है जो भग गणेश के साथ फोटो ले रहे है एक आदमी बैठा हुआ है।

और पम्पलटेस बहोत सारे लगे हुए है क्लास के अंदर ग्राउंड में।

ये चित्र में बहोत सारे टमाटे है थोड़े लाल टमाटे और थोड़े पीले भी टमाटे है और एक टोकरी मे रखे हुए है टमाटे।

अ-क बालकनी दिख रही है और तीन खिड़कियाँ बंद हैं और धूप बोहत तेज़ है और एक बड़ा-सा खम्बा लगा हुआ है।

ये चित्र एक बड़ा-सा फतरा का दिख रही है बहोत सारे और तीनो तरफ उ झाड़े है बीच में एक छोटा-सा घर बना हुआ है।